दिवाले पे कुछ कुछ लिखा हुआ है चौदह साल की वगैरा कुछ लिखा है इसके आगे बाइक खड़ी है।

एक शर्ट पहना हुआ है और भी बहुत सारे कपड़े--

ये मोबाइल ये मोबाइल का दुकान है ये बाहर कई तरह के पोस्टर लगे हुए हैं।

इसमें एक खिड़की नजर आ रही है ये ऐ_सी वाला रूम है।

दस आदमी बैठे हुए है कुर्सी पे इसमें दो फैन नजर आ रहे हैं। एक एल_सी_डी नजर आ रहा है।

यह एक पेंट की दुकान है जो कि दिखने में ज्यादा बड़ी नहीं है इसमें--

कुछ बच्चे पीछे हैं तो कुछ बच्चे आगे हैं।

बाहर बहोत सारे लोग हैं एक बिजली का खंबा नजर आ रहा है जिसमें एक--

बाहर शीशे का टेबल है प्लास्टिक का है जिसकी--

न्यू जर्मन होमियो क्लिनिक डॉक्टर मंसूर आलम--

यहां पे तीन चार घर है।

घर के बाहर लकड़ी है पेड़ है इंटा है।